पोस्ट ऑफिस का साइन बना हुआ दिखाई दे रहा है।

और एक फैन लगा हुआ दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा हुआ है।

न्यू रेड कारपेट ग्रीन कारपेट बिछा हुआ दिखाई दे रहा है अंदर कुछ पर्सन्स नजर आ रहे है।

बोर्ड्स लगे हुए दिखाई दे रहे हैऔर कई सारे ब्लॉक जैसे बने हुए है चेयर्स रखी हुई दिखाई दे रही है एकदम न्यू फर्नीचर दिखाई दे रहा है।